ये दृश्य एक रूम का है।

दृश्य में एक बाइक लगाया हुआ है।

नीचे फर्श पे उजले रंग का कुछ गिरा हुआ दिखाई पड़ रहा है।

सतरंगी प्लेट्स भी रखी हुई है।

पीछे बहोत सारे पेड़ पौधे हैं।

यह दृश्य एक जंगल का है।

इसके ऊपर एक पोस्टर चिपकाया हुआ--

नीचे में भी एक ग्रिल दिखाई पड़ रहा है जो कि उजले रंग का है।

उसके भा ऊपर से बहुत सारे गुजरे हुए हैं जोकि लाइट के हैं।

दृश्य ई जिम का हैं जहा --

टायर का रंग पीला और कला।

ऊपर में आसमान का रंग नीला और सफेद दिखाई पड़--

साइड में घास भी दिखाई पड़ रही है जो कि हरे रंग की है।

घास दिखाई पड़ रहे हैं।

दृश्य में एक गाड़ी दिखाई पड़ रहा--

साइड में पूजा करने वाला कपबोर्ड भी बनाया हुआ है।

साइड लाल और सफेद रंग दिखाई पड़ रहे हैं जो की बुक्स ऐसे स्टाइल में सजाए हुए हैं।

इस दृश्य में एक दवा दुकान दिखाई पड़ रहा--

यहां पर रैक में बहुत सारे दावे रखे हुए हैं।

इस दृश्य मे बहोत सारे बलूंस दिखाई पड़ रहे।

बहोत सारी लाइट्स दिखाई पड़ रही हैं जो कि जल रहे हैं।

कुछ घास फूस और पौधे दिखाई पड़ रहे हैं।

यह दृश्य एक जंगल का है।

कुछ प्लेयर्स के हाथ में हॉकी दिखाई पड़ रहे हैं।

इस दृश्य मे टायर का दुकान दिखाई पड़ रहा है यहां पे बहोत सारे काले कलर के टायर दिखाई पड़ रहे हैं।

जहाँ से ऊपर की ओर से पानी गिर रहा है।

इस दृश्य में एक बंधा हुआ घर दिखाई पड़ रहा है।

कुछ बकरियां सफेद और कुछ काले रंग के दिखाई पड़ रही है।

उसके ऊपर एक पोस्टर लगाया हुआ है।

कबड में बहोत सारे पैकेट में सामान रखे हुए हैं।

हाथ में कुछ लिया हुआ है।

काउंटर शीशे का है।

आगे की ओर एक बाइक लगाई गई है।

इस दृश्य में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई पड़ रहा।

जोकि ह हरा कलर का कोट पहना है।

पीछे रॉड के पास खड़ा है।

आगे मे बहोत सारे ज्वेलर्स रखे हुए है जो किसी शीशे मे पैक है।

ऊपर एक माउस भी रखा हुआ जो कि काले और पीले रंग का है।